फिर लोग भाग हमको गालियां देंगे कि आपने पिज्जा और बर्गर खाके अपने शरीर की हालत जबकि उनको ये नहीं पता है कि ये सब मशीनों को छोड़ देने से हो--

अच्छी व्यवस्था रहती है सभी लोग एक ना एक जाएंगे वहां रुकेंगे--

ये मेरे घर के आस-पास का रामनगरी का बाजार है रामनगरी के बाजार में मैं अक्सर जाती हूँ।

लगता है चिड़िया घर का सीन है एक गेंडा अपने छोटे बाबू के साथ खड़ा हुआ है।